अभी हमको भी बहुत सारे लोगों से करवाना है लाइक वर्षा से करवाना है इससे करवाना है लेकिन कोई नहीं करना चाह रही है कोई करना ही नहीं चाह रही है पता नहीं क्या चल --

और कुछ-कुछ यहां पर ही है जैसे यहां पर कुछ दिख रहा है कि यहां पे कुछ कंप्यूटर वाला चीज होता होगा कंप्यूटर लैब है।

अवॉइड नहीं करना चाहिए बहुत कुछ करना चाहिए हमारे बॉडी के लिए हम लोगों को--